यहाँ पर बैठने के लिए बहुत सारी सीटे हैं।

ये हमारे भारत देश का स्टेट बैंक ए_टी_एम है।

यहां एक झरना है झरना बहुत अच्छा दिख रहा है और बड़ा सा नीचे मे तालाब जैसा डबरा है।